ये एक पुरानी जगह है और यहां पर बहुत सारे खंबे दिख रहे हैं और यहां पर एक पंखा दिख रहा है।

और यहाँ पे आप देख सकते है टेबल पे बुक्स पेपर पेन रखा हुआ है ऊपर।

ऊपर लाइटिंग है इस साइड आप देख सकते है कुछ फ्रिज ऐसा कुछ रखा हुआ है।

फिर उसके उस साइड भी रोड है आई थिंक और वहां पे दूर-दूर तलक घर दिख रहे हैं।

और जंगल के आगे आपको बहुत सारे घर फ्लैट्स बिल्डिंग्स दिख रहे है और यहाँ पे ये मिली है।

ये है प्लाजा सानी नॉन वेज की शॉप यहां पे आपको नॉन वेज मिल सकता है।

गाड़ी की बीच से वही आ जा रहे है रोड क्रॉस करते करते हुए उस साइड काफी दुकाने है।

और बहुत बड़ी है ये दो तलब पानी पानी और उसके उस साइड कुछ पहाड़ जैसा दिख रहा है या ।

ये स्टील की रेलिंग लगी हुई है उस साइड शायद बहुत बड़ी हैवी रेलिंग लगी--

यहां पर बहुत सारी ए_सी ए_सी लगी हुई है पंखे हैं सामने भगवान जी की पिक्चर --

इनका फेस हाइड है और ये इतना एरिया बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है लाइटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है नीचे टाइल्स चमक रही है बिल्कुल।

और इधर आप देख सकते है शायद एस_सी है ऊपर दिख रही है और यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है।